हरा-हरा जंगल है और इसके आस-पास मे बोहत सारे पेड़ पौधे है और उसमे एक घर बनाया हुआ है।

और बहुत अ-आदमी भी है और उसके आसपास मे बहुत सारे झाड़िया भी देखने को मिल रहा है।

यहां पे एक क-कैसियो भी रखा हुआ है और एक थैली भी रखा हुआ है।